चारो तरफ लोहा से घेरा हुआ घे चार चका गाड़ी लगा आसमान बहुत सुंदर दिख रहा है | बादल --

पेड़े हैं आसमान में बहुत सुंदर दिख रहे हैं भी सुन्दर हैं |

छड़ छै छड़ छे की --

कप पिंक कलर ऑरेंज कलर वाइट कलर आसमानी ब्लू कलर --

एक है उसको बता रहा है वह एक रेड कलर कपड़ा पहना हुआ है एक व्हाइट और पिंक कलर की जैकेट हाथ में पेपर लिया हुआ है।

वह बहुत सुन्दर दिख रहे है बहुत सारे मछलिये है की निचे हैं वो एक बर्तन में रखे वह है वो |

नावे भी लगा हुआ है उसके बगल में पहाड़े भी है आसमान बहुत सुंदर वहां पे दिख --

और सुगापंछी कलर भी दिख रहा हैं फोटो बहुत बड़ा है |

एक सब्जीमंडी है उस में बहुत सारे जमी दुकाने और रंगे-बिरंगे सब्जियां भी हैं हरा मिर्च --

छै नीचे गोभी है आलू है।

पत्थर का चट्टाने है वहां पे बहुत सारे झंडे है उस के नीचे थोड़ा सा पनियाँ है।

हरा भरा खेते हैं | चारो तरफ बहोत सुन्दर --